और इसके अंदर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

जो कि अलग अलग कलर की है और स्कूल के ऊपर बोर्ड बना हुआ है जो की पीले कलर से लिखा हुआ है।

ऊपर की ओर एक फैन और लाइट दिखाई दे रही है।

और आगे की ओर लवे के पुल बना हुआ है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस के अंदर बहुत सारी कुर्सियां रखी है।

और कुछ टंकी भी दिखाई दे रही है।

और इसके अंदर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसके अंदर एक चॉकलेट कलर का बेड भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे की ओर दीवाल पे क्रीम कलर हो रहा है।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

और नीचे की ओर एक व्यक्ति माइक लगाए बैठा हुआ है।

यह एक दुकान है इसके अंदर स्टैंडो पे खेल खिलौने रखे है।

और इसके अंदर बहोत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही है।

और दो कुर्सी भी रखी हुई है और एक कूलर भी रखा हुआ है।